जिसपे नीले कलर का कुछ है और चार गोल-गोल बने हुए हैं इसमें एक बदक भी बानी हुई हैं और पी ऊपर हमें आसमान भी दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में हमें बहुत सारे पैन दिखाई दे रहे हैं और हमें तीन चार बैग भी टगे हुए दिखाई दे रहे--

ये इमेज एक मंदिर की है ये मंदिर ब्लू और रेड कलर का है और इसमें पी--

--डे बी पडे हुए दिखायी दे रहे है ये कच्चा रास्ता है जिसमें पूरे मिट्टी पडी हुई है एक कार जा रही है जो वाइट कलर की है और बिजली के खम्भे लगे हुऐं है बोहत सारे तार हमें दिखाई दे रहे है।

एक खंभा भी दिखाई दे रहा हैं आसमान दिखाई दे रहा हैं जो व्हाइट कलर का हैं।